यहां पर ऊपर सितारों की तरह छोटी छोटी लाइटें लगी हुई हैं।

यहां पर एक टेबल रखा हुआ है।

यहां पर कुछ सफेद कलर की गाड़िया दिख रही है।

लाइट का बहोत बड़ा खंबा है।

यहां ऊपर वॉल सीलिंग हुई है।